ये तस्वीर किसी ऑफिस की लग रही है।

और कुछ बिस्कुटे की पोकीट रखी हुई है इसके बगल में डेयरी मिल्क है और कुछ भुजिये हैं।

कुछ तेल कुछ बिस्कुट कुछ ड्राई फ्रूट लिखे हुए हैं जिसमें तेल की प्राई एक सौ बासठ रुपया है।

नौ व्यक्ति मौजूद हैं जो कि सब के ऊपर में वाइट कलर की टोपी मौजूद है।